और इस बगीचे में बढ़िया हरी घास है व आसपास हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

सामने डी_सी_एम बृजवासी टैक्सटाइल्स का बोर्ड लगा हुआ बैनर लगा हुआ जिस पे पर्दे चादरें तौलिया सूटिंग शॉर्टिंग लिखा हुआ है।

कम्बम शाल लोई जयपुरी रजाई दरी यूनिफॉर्म इत्यादि का सामान यहां पर मिलता है।

ये अलमारी टीन की बनी हुई और साफा देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं।

सामने एक ग्राउंड दिखा है ग्राउंड के उस पार बिल्डिंग में दिख रही हैं।

यहां पे बहुत सारी लेडिस का कपड़े का सामान रखा हुआ।

रंग बिरंगे कपड़ों का सामान रखा हुआ है जैसे लाल हरा गुलाबी।

इसकी दुकान है आगे एक आंटी जी बैठे हुई हैं।

और एक टेबल भी रखी हुई है टेबल पर एक कुल्हड़ रखा हुआ है।

यहां पर बहोत ज्यादा भीड़ दिख रही है और कुछ लोग वीडियो फोटो बनाकर खींच रहे हैं।

ये पांव पोछने के लिए बहोत सारे पायदान रखे हुए हैं।

और बिल्डिंग के सामने पार्किंग की सुविधा है जहां पर बहुत सारी फोर व्हीलर खड़ी हुई है।

और सामने अह के गेट पर कई प्रकार से सजावट की हुई है।

पैलेस के बाहर दो मोटरसाइकिल की रखी हुई है।

आपने एक बस स्टैंड देख रहा है एक बस देख रही है।

सामने एक व्यू दिख रहा है जिसमें अगल बगल गार्डन दिख रहा है।

इस रस्ते पर अपेक्स सीमेंटेड अपेक्स बीछे हुए हैं।

और यह सूअर देखने में बहुत ही खराब लग रहे हैं सफेद रंग के सारे सूअर हैं।

एक टीम के लोग लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए हैं और एक टीम के लोग ब्लू रंग की टी-शर्ट पहने हुए हैं।